ठेले पर कई बांदा को गोभीया और केले रखे हुए हैं।

आगे कुछ बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।

पथरीला रास्ता संकेत देता है।

यह स्थान किसी ट्रैकिंग स्थल या धार्मिक स्थल का रास्ता हो सकता है।

यह तस्वीर एक व्यस्त चौराहे की है।

यह तस्वीर एक धार्मिक या प्राम्परिक कार्यक्रम का हिस्सा लग रही है इसमें कुछ महिलाएं और अन्य लोग औपचारिक परिधान में दिख रहे हैं।

हॉल को रंगीन तारों और सजावट से सजाया गया है।

झील के सामने एक लंबी सड़क जा रही है।

यह तस्वीर एक ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक इमारत की है।

पीछे की तरफ एक ब्लैक बोर्ड रखा भी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक ग्रामीण क्षेत्र या खुले मैदान की हो सकती है।

सामने एक लाल कपड़ा रखा नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक बड़े टेंट में आयोजित धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम को दर्शाती है।

कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

गेट से अंदर जाने पर एक कच्ची मिट्टी और घास वाली जमीन है जिस पर एक कुत्ता खड़ा है।

पीछे की और कुछ ग्रामीण या बाहरी झाल के का दृश्य भी दिख रहा है।

दुकान की दीवारों का रंग सफेद है।

इसमें एल्यूमीनियम और कांच से बना दरवाजा दिखाई दे रहा है जो एक केबिन जैसा माहौल बना रहा है।

इस तस्वीर में एक गोदाम दिखाई दे रहा है।

अधिकतर बॉक्स एक ही ब्रांड के हैं जिन पर स्विफ्ट लिखा हुआ है।

दरवाजे और उसके आसपास के क्षेत्र में रंगीन गुब्बारों लगाया गया है।

छत पर लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है।

बोर्ड के ऊपर के_जी_एन फर्नीचर लिखा हुआ है।

दुकान के दरवाजे शीशे के बने हुए हैं और उसके सामने कई मोटरसाइकिले रखी नजर आ रही है।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

काउंटर पर दो व्यक्ति खड़े हैं और एक बच्चा जो संभावत ग्राहक हो सकता है नजर आ रहा है।

गड्ढे के किनारे लकड़ी के फ्रेम लगाए गए हैं।

जहां सामने एक स्वागत काउंटर दिख रहा है।

दाएं ओर ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी नजर आ रही है।